आदमी ने कल पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है। कई तरह के फूल लगे हुए हैं और कई तरह के परदे भी लटके हुए हैं। झालर भी लटकी हुई है।